modifying the page layout पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे layouts block configuration और permissions और blocks को हटाना और पुन: क्रमित करना
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबंटु लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम drupal 8 और firefox वेब ब्राउजर
आप अपने पसंद का कोई भी web browser उपयोग कर सकते हैं
सबसे पहले हम layout के बारे में सीखेंगे
यहाँ हम themes और blocks का परिचय देखेंगे
themes हमें सामान्य लेआउट देता है हमारी site पर देखें
मैं आपको themes के बारे में थोडी देर में बताऊँगी
अभी के लिए समझते हैं कि theme को कंटेंट बदले बिना drupal site पर लागू किया जा सकता है
और यह blocks का colour स्कीम location और text और इमैज के लिए सभी फॉर्मेट दर्शाता है
इससे पहले हमने सीखा कि वे blocks इनफॉर्मेशन हैं जिसे site के विभिन्न क्षेत्रों में रखा जा सकता है
blocks block regions में जाते हैं और block regions theme द्वारा निर्धारित हैं
डिजाइनिंग क्षेत्र में हमारे पास blocks हैं हमारे पास themes हैं और हमारे पास menus है
कृपया ध्यान दें इससे पहले हमने themes के बारे में या लागू करने के बारे में नहीं बताया है
इसे तथ्य को highlight करने के लिए किया गया था हम किसी भी जगह पर theme लागू कर सकते हैं जब site का निर्माण हो रहा है
अभी तक रूकने का केवल कारण यह है कि हम theme को लागू करने के लिए आखिरी तक रूक सकते हैं
लेकिन मैं हमेशा जैसे ही यह तैयार होता है अपनी theme लागू करना पसंद करूँगी
अपनी website खोलें जिसे हमने पहले ही बनाया है
blocks और block regions के साथ layout दिखता है
blocks हमें हमारी site पर कहीं भी जानकारी रखने में सक्षम करता है
structure और block layout पर जायें
सभी blocks जो कि हमारे वर्तमान theme से उपलब्ध है यहाँ है
उदाहरण के लिए : header primary menu secondary menu आदि
हमने वास्तव में उनमें से कुछ को पहले ही रखा है
याद करें हमने sidebar में welcome to drupalville custom block रखा है
यह इस विशेष theme पर बाईं sidebar में दिखता है
हमने अपने बाईं sidebar में recent events added view को भी जोड़ा है
अब सीखते हैं कि अपने blocks को कंफिगर कैसे करें और permission कैसे दें
सबसे पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि कौन से block regions क्या करते हैं
ऊपर यहाँ demonstrate block regions है इस पर click करें
drupal में प्रत्येक theme हमें इस तरह के picture देते हैं जहाँ block regions हैं
block regions themes पर निर्भर है
bartik में हमारे पास options हैं
secondary menu header
primary menu highlighted featured top breadcrumb sidebar first content
sidebar second
हम किसी भी block को किसी भी region में रख सकते हैं
जैसे कि content block content region के बाईं ओर होना चाहिए
exit पर click करें
breadcrumbs block को breadcrumb region में ही छोड दें
लेकिन वहाँ कुछ और भी चीजें हैं जिन्हे हम स्थानांतरित कर सकते हैं
search block को clicking या dragging द्वारा move करें या
drop down पर क्लिक करें और इसे header में रखें और यह ऊपर आ गया है
इसीतरह welcome to drupalville को sidebar first के पहले स्थान पर रखें
save button पर क्लिक करके बदलाव को सेव करें
अब बदलावों को देखने के लिए homepage पर जायें
यहाँ header के ऊपर हमारा search bar है
और हमारा welcome to drupalville block अब सबसे ऊपर है
अत: इस तरह से blocks को position और order में रखते हैं
हम अब blocks के configurations और permissions पर जाते हैं
structure और block layout पर click करें
और अपने recent events added block को खोजें
फिलहाल यह sidebar first में है और यह प्रत्येक पेज पर दिखाई दे रहा है
configure पर click करें
फिलहाल recent events added block हर जगह दिखाई दे रहा है
लेकिन हम इसे केवल एक event page पर देखना चाहते हैं
events पर checkmark करें और save block पर click करें
फिर से नीचे scroll करें और save block button पर click करें
back to site पर click करें
added recent events added block वहां कहीं भी नहीं है
लेकिन यदि हम event पर जाते हैं तो हम recent events added देख सकते हैं
अब यहाँ ऊपर welcome to drupalville block में हम welcome message देखते है एक बार लॉगिन करने पर यह आवश्यक नहीं है
उसे hide करें
यहाँ छोटी pencil पर click करें औऱ configure block चुनें
drupal के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि pencil या gear का उपयोग करके front end edit कर सकते हैं
content type द्वारा सीमित होने के बजाय इसे व्यक्तिगत पेज तक सीमति करें
यहाँ देखें specify pages by using their paths
front पेज पर कुछ दिखाने या छुपाने के लिए angle bracketfrontangle bracket का उपयोग करें
copy और paste करें show for the listed page चुनें
homepage पर केवल हमारा welcome block होगा
एक step आगे बढ़ें
roles पर click करें और anonymous user में checkmark करें
और save block पर click करें
और अब यह केवल तब दिखाई देगा जब हम लॉगिन नहीं है
हम इस message को नहीं देखते हैं क्योंकि हम अभी लॉगिन हैं
लॉगआउट करें औऱ welcome to drupalville block फिर से दिखता है
लेकिन जब home login करते हैं home पर click करें यह अब यहां नहीं है
अत: block में configuring moving और permissions देना बहुत ही आसान है
इसका अधिक अभ्यास करें
structure पर click करें और blocks पर click करें
हमारे पास primary menu block में main navigation है
यदि हम उसे move करते हैं तो हमारा main navigation पूर्णत: भिन्न स्थान पर होगा
यहाँ नीचे हमारे पास featured bottom first second और third
footer first second third fourth और fifth हैं
powered by drupal और footer menu footer fifth स्थान में है
यहां कोई भी अक्षम blocks नहीं है
अपने एक menus को footer first block region में रखें
वापस ऊपर scroll करें
अपना user account menu पता करें औऱ उसे footer first में रखे
यह तुरंत ही नीचे moved हो जाता है
अब save blocks पर click करें
site पर वापस जायें
नीचे scroll करें और देखें कि user account ऊपर के बजाय नीचे footer में आ गया है
अत: किसी भी block को किसी भी उदेश्य के लिए कहीं भी रख सकते हैं
structure और block layout पर वापस जायें
अब block को हटायें
powered by drupal को footer fifth block से हटायें
साधारणत: dropdown पर click करें औऱ none चुनें फिर save blocks पर click करें
नीचे scroll करें
हम देख सकते हैं कि powered by drupal block अब disabled block region में है
यह पूर्णत: हट गया है यह देखने के लिए back to site पर click करें
इसी के साथ हम इस tutorial के अंत में पहुँच गए हैं
संक्षेप में
इस tutorial में हमने सीखा layouts block configuration और permissions और blocks को हटाना और पुन: क्रमित करना
यह video acquia और os ट्रेनिंग से लिया गया है और spoken tutorial project आईआईटी बॉम्बे द्वारा संशोधित किया गया है
इस link पर उपलब्ध video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे download करके देखें
spoken tutorial project team कार्यशालाओं का आयोजन करती है और प्रमाणपत्र देती है अधिक जानकारी के लिए हमें लिखें
spoken tutorial project nmeict मानव संसाधन विकास मंत्रायल और nvli संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निधिबद्ध है
यह स्क्रिप्ट बिंदु पांडे द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद